यहाँ पर एक मस्जिद बगैरा कोई दिखाई दे रहा है जहाँ पे तीन गुम्बज़ टाइप में बने हुए हैं और दो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई है दोनों खिड़कियों के बीच में एक दरवाजा है जिस --

और यह पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं है।

भाग ली हुई है और पीछे कुछ लड़के भी दिखाई दे रहे हैं जो कि दौड़ते हुए आ रहे हैं शायद यह खो-खो नाम का एक गेम होता है वह उसी को खेल रहे हैं और अगल बगल बहुत--

सभी पेड़ बहुत अच्छे दिखाई दे रहे है नीचे हरि-हरि घासे दिखाई दे रही है और ऊपर काला आकाश सा --

और अगल बगल बहुत सारे पेड़ बहुत बड़े पहाड़ दिखेती दे रहे है ऊपर नीला आकाश साफ देखा जा सकता है नीचे कुछ पाणियाँ लगी हुई है और यहाँ की चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी है कुछ चोटी चट्टानें भी उपस्थित है ।